बैठने के लिए टू चेयर्स भी पड़ीं हैं।

हाइड्रोलिक प्रेस की मशीन है।

इसके बाहर काफी बड़े टा--

होटल की तस्वीर है।

इनके सामने एक टीचर इनको--

राइस एंड चिकन पड़ा है।

वाइट घोड़े को निकाल रहे हैं।

हॉर्स का कलर ग्रीन है।

सामने टेबल पर एक हारमोनियम भी--